अ आदि चीज़ें रखी हुयी हैं। एक यक्ति सामान खरीद रहा है दूसरा यक्ति बैठे कर सामान दे रहा है। एक स्टूलो पर सब्जियां रखी हुई --

पास में थोड़े-थोड़े एक दो पेड़ लगे हुए हैं। पत्थर दिखाई दे रहें हैं नदी में।

पीछे एक बैनर लगा हुआ है। जिसमें केक और बॉडी बिल्डर की फोटो --

अरे अलवार में काफी सारा समान रखा हुआ है। ए.सी. लगी हुई है काफी सारा फर्नीचर लगा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें काफी सारे एं अरे लाइट्स लगी हुई है एक कार खड़ी हुई है।

और साइकिले जा रही है। लाइट के खंभे लगे हुए हैं। मकान बने हुए हैं। पेड़ लगे हुए हैं।